अच्छा जगह और सुंदर और सुसज्जित है लाइटिंग की व्यवस्था भी काफी अच्छी हुई है लाइट बहुत अच्छे नजर तरीके से--